पीछे की ओर एक मैदान नजर आ रहा है जहां पर हल्की छोटे घास लगे नजर आ रही है।

यह चित्र एक शादी के कार्यक्रम का नजर आ रहा है।